नीचे रेल पटरियां दिख रही हैं और उधर के प्लेटफार्म पर बहुत से लोग ट्रेन का इंतजार करते--

अंदर जाने के लिए यहां पर चार-पांच सीढ़ियां हैं ऊपर जाने के लिए--

यहां पर एक बड़ी पत्थर की दीवार है।

और दो साइकलिंग मशीन भी रखी गई है दीवार पर एक सॉकेट दिख रहा है।

और यहां पर बाजू में कुर्सियां की हुई हैं।

हॉल की दीवार पर पोस्टर लगे हुएं हैं स्पोर्ट्स डे के।

यहां पर पेंट के डब्बे रखे गए हैं।

और एक एस_बी_आई का ए_टी_एम भी दिख रहा है उसके बाजू एक गाड़ी दिख रही है।

ऊपर खुला आसमान है ये दिन का मंजर है।

यहां पर एक रूम है एक पलंग है और पलंग पर कुछ तकिए हैं।